यहां में के_एफ_सी का कुछ कटिंग बॉक्स रखे गए हैं।

छठ के ऊपर मुझे एडिटिंग की दिख रही है।

पीछे में बहोत सारा पोस्टर भी लगे हुए है फिर यहां --

दूर की ओर देखा जाये तो ये रास्ता में एक कुत्ता है फिर उसका सामने इटा का स्लॉप सब रख के है जमा करके फिर उधर में छोटा सा बैंबू से बनाया हुआ कुछ है।

इस तस्वीर में मुझे एक बार्बर शॉप का नजारा दिख रहा है जहां में दो आदमी हैं।

यहाँ हमें काउंटर भी दिख रही है जहां में आदमी लोग भी खड़े हैं यहां में स्कूटी भी मुझे दिख रही है।

उधर में बहुत सारा मछली रखी गई है।

इस तस्वीर में मुझे एक होटल या दुकान का नजारा दिखाई दे रहा है जहां में दो आदमी दिख रहे हैं।

बहुत सारा चेयर पड़े हैं टेबल में खाना लगा के और बहुत सारा ग्लास और जग भी दिख रही है।

यहां में नीचे में कैंडल भी रखे गये हैं।

इस से आगे तो मुझे यहां एक सड़क दिख रही है जिसका जस्ट सामने एक बड़ा सा गेट है जो कि ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर रोइंग का है।

उधर भी सीढ़ी चढ़ने के लिए तख्ता का बनाया हुआ है।

बाहर कुछ बना के है भी मुझे दिख रही है।

इस तस्वीर मे मुझे स्विमिंग पूल का नजारा दिख रहा है जहां पे बहोत सारा स्लाइड्स भी है खेलने के लिए।

सामने में बोलेरो खड़ा भी मुझे दिख रही है चेयर वेयर रखे हुए है स्कूटी भी मुझे दिख रही है उधर में --

पीछे में रख के है बस्ता भी रख के--

इस रूम में मुझे एक सुंदर सा नजारा दिख रहा है जो कि मुझे बड़ा सा मॉल लग रहा है जहां में बहुत सारा नया बाइक्स खड़े हैं जहां में बैलून वैलून लगा के हैं।

सामने में भी पोस्टर लगाके है जो की बाइक का है।

इस तस्वीर में मुझे एक रूम का नजारा दिख रहा है जहां मैं बहुत सारा मशीन रख गई है और बहुत सारा कंप्यूटर भी दिख रहे --

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है मुझे लग रहा है यह एक ऑफिस है जहां में झंडा लहराते हुए--

इस तस्वीर में मुझे दुकान दिख रही है जहां में बहुत सारे चीजें रखी हुई है।

यहां में गेट में भी थोड़ा कलर लगा के है।

नीचे में पेड़ पौधे भी बहुत हैं बहुत सारा पेड़ दिख रही है दूर में भी घर भी है।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा सा होटल दिख रहा है जहां में बहुत सारे लोग भी हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक रूम का नजारा दिख रही है जो की बहुत सुंदर है।

मुझे ताला भी दिख रहा है बाहर की ओर रखी गई है यहां में सीढ़ी बनाके है पी--

मुझे नीचे में स्टूल्स और चेयर भी दिख रहा है।